ये एयरपोर्ट का वेटिंग लॉज है। लोग बोहत लोग जो हैं अपने --

और इतिहास को और बारीकी से जान सके जिसको जो भी चीजे होती है उसको म्यूजियम में रखा जाता है।